वहाँ पर बहुत सारे लोग है। नीचे कुछ दु दुकानें लगी हुई है। सब्जी की दुकान लगी हुई है।

बहोत सारी पेड़ है। एक घर बना हुआ है।

मकान है। उनमें जालिया लगी हुई है। पोस्टर लगे हुए है। गाड़ी खड़ी हुई है।

यहाँ पे बहुत सारे लोग है कुछ लोग बहुत लोग के तगाड़ी है एक आदमी भरी हुई तगड़ी सर पे रख के जीने से चहड़ रहा है ।

पहाड़ है। बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए है। उनके पीछे पहाड़ है उस पे बहोत सारी पेड़ है।

तालाब के आस-पास छोटे-छोटे पत्थर ढंके हुए है। पहाड़ों के पीछे बड़े-बड़े पेड़ है।

टेचि रखी हुई है आगे कुछ कुर्सियां है तो कुछ लोग बैठे हुए है एक गमला रखा हुआ है उसमे एक पौधा लगा हुआ है ऊपर लाइटे लगी हुई है।